फूलों की क्यारियां नजर आ रही है।

आ रहे हैं और बहोत सा सामान नजर आ रहा है एक अलमीरा नजर आ रही है।

रहे हैं जो की कागज से अच्छी अच्छी चीजे बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

टेबल पर यह बच्चे बैठे हैं और एक्सपेरिमेंट कर ते हुए --

यहां पर एक गणतंत्र द्वार नजर--

बहोत से बड़े बड़े के पौधे नजर आ रहे हैं और नीला आसमान नजर--

यहां पर एक लड़का हीरो बन रहा है जोकि जिसने की ब्लैक कलर की--

आ रही है और नीला आसमान नजर आ रहा है।

चलते फिरते नजर आ रहें हैं।

यहां पर बहुत सा सामान नजर--

चिम का समान नजर आ रहा हैं।

फूल के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं।